यख मा जी एक बहोत बड़ू हॉल छ यख मा जी यख ब्यो छ लगण लग्युं।

यख मजी एक सड़क छा सड़क किनारे यख माजी एक पेट्रोल पंप छा यख अलग अलग प्रकार कु तेल मिल जांदू जन डीजल ह्वेगी पेट्रोल ह्वेगी इंजन ओइल ह्वेगी।

एक मे जी एक मेला चलेगयों जे देखने मे जी कुंभ का मेला चलग्यो एक मे जी की सारा लोग भीड़ जमाए कर आया जो।